यह बहोत सुंदर वाटर पार्क हैं।

ये एक लेडी अ बैठी हुई है वो कुछ--

जेंट्स लोग हैं और हरे हरे घास है छोटे छोटे पेड़ हैं ऊपर पुल दिखाई दे रहा पुल के बगल में बड़े बड़े पेड़ हैं।

शीरी राम सर्विस स्टोर है यहां पर--

और यहां पर एक बोर्ड लगा है बोर्ड --

ये काफी बड़ा स्टोर है इसमें अ बिस्किट स साबुन हारपिक काफी सामान रख --

और यहां बीच में नारियल का पेड़ है और काफी लोग खड़े है देख रहे है फूल देख रहे है यहां पर--

जैसे बना के बहोत सुंदर लग रहे हैं ये--

सुबह का टाइम लग रहा है। काफी दुकाने दिख रही है। आसपास में पेड़ है।

सामने एक बहोत सुंदर बिल्डिंग है स्कूल है एक--

बहोत सुंदर है और बगल में कमरे भी दिखाई दे रहे हैं।

देख रहे हैं और काफी लोग बैठे हुए है।

इसका प्रमोशन के यहां एक स्कूटर खड़ा--

ये बहुत बड़ा बिजली घर लग रहा है यहां पर लोहे के काफी बड़े बड़े--

ये एक ढाबा है नंबर वन फौजी मलिक ढाबा नंबर वन फौजी मलिक ढाबा इसके ऊपर लिख--

और सामने छोटी छोटी ट्यूब की फोटो बल्ब की फोटो हैं।

गमलों में पौधे लगे हुए हैं और भी ग्रीन ग्रीन पौधे जो--

ऑफिस लग रहा है जैसे तो यहां पर लोग--

और अंदर रात का टाइम है जाग रहे है और काफी बड़ी बिल्डिंग है आगे टोकरियां ही--

और ये कलरफुल घास है फूल है सामने एक पीछे पहाड़ी है और बादल दिख रहे है।